यहाँ एक स्नैक्स बार ऐसे लिखी हुई शॉप है एक आदमी बैठा हुआ है चेयर पर--

वो फोन पर बात कर रहा है उसने व्हाइट कलर की टोपी पहन रखी है एक आदमी खड़ा है ब्लू कलर का डेसबिन पड़ा है।

सोपा सेट है झूमर दिख रहा है कलरफुल लाइट्स है लैंप है--

एक आदमी टम-टम पे रुका है दूसरी साइड पे एक लेडिज खड़ी है बाइक है।

यह एक शॉप है डेली दोस्त सोनी बेकर ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे फोन नंबर लिखा हुआ है।

यह एक पहाड़ी है यहाँ पर बड़े-बड़े पत्थर दिख रहे हैं झाड़ी है झाड़ के बीज यहाँ पे दिख रहे हैं ।

आंधियाँ दिख रही है दो आदमी लोग खड़े हैं एक नीचे खड़ा है एक पत्थर के ऊपर खड़ा--

यहाँ पे कैफे में अंदर की साइड पे चेयर रखा हुआ है काउंटर है--

प्रिंटर दिख रहा है और बैठने के लिए स्टूल है डेस्टबिन का डिब्बा दिख रहा है।

लॉग ड्रेस है प्लाजो है कलर - कलरफुल के ड्रेस रखे हुए हैं।

ये एक स्टेशन है यहाँ पे ट्रेन की पटरियाँ दिख रही हैं और एक पटरी पर ट्रेन है।

और एक आदमी साइड पे खड़ा हुआ है सीढ़ी दिख रही है बहुत सारे टायर दिख रहे हैं।

यह एक ऑफिस है यहाँ पे बोर्ड है दरवाजा दिख रहा है।

और सामने के साइड पे रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है फैन है लाइट है।

ये एक ऑफिस है या ऑफिस में--

पेट्रोल भर रहा है गाड़ी में फोर व्हीलर दिख रही चार्ट मार्क्स --

बहुत ही बड़ा स्कूल है बिल्डिंग बहुत बड़ी दिख रही है फोर व्हीलर खड़ी है येलो रेड ब्लू कलर के पत्थर गड़े हुए हैं गार्डन बना हुआ है ।

ये फूलों माला की दुकान दिख रही है यहाँ पे फूल के हार जो बनते हैं ना वो हार अटके हुए लग रहे हैं।

यहांँ बादल दिख रहा है बड़ा-सा पेड़ है जो सोलरस की प्लेट होती है ना वो सोलार की प्लेट दिख रही है ।

बहुत है और बड़ी बिल्डिंग दिख रही है पीछे के साइड पे--

यहाँ मॉल है बड़ा सा मॉल है यहाँ पे लैंप है लाइट लगे हुए हैं और --

अम्ं बादाम वाला ऑयल दिख रहा है और बिस्किट्स है शैंपू है।

चेयर पर एक आदमी बैठा है स्टूल है फैन है --

ये एक सलोन है इस सलोन शॉप पे ऐसे लिखा हुआ है बाल दाढ़ी बाहर के साइड पे --

टेबल है तीन चेयर है बैठने के लिए सोफा सेट है शी म पॉट है --

यह एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है इस शॉप में अ प्रेस है और मिक्सर दिख रहा है।

और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के फूड - प्रोसेवर वगैरह रहते है वो सारा कुछ है अलग अलग वैरायटी के मिक्सर है।

और इसका एक करके लिखा हुआ केक है इम्म गिफ्ट्स बहुत सारे लोगों ने लेकर आए हैं।

एक गार्डन है गार्डन के पास में एक रास्ता है एक आदमी चल रहा है रास्ते पर --

डेकोरेशन किया हुआ फंक्शन हॉल है यहाँ पे पिंक व्हाइट ग्रे --

और कपड़े से सजा हुआ ये बहुत ही सुंदर ऐसा --

थोड़ी टूटी फूटी कारें दिख रही है पार्ट्स अलग अलग हो चुके हैं।

फ्लावर पॉट की पॉ पॉट है और यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

बच्चों को खेलने के लिए झूला भी --

यहाँ पे स्पेशल रूम ए_सी लिखा हुआ है बहुत सारा उजाला दिख रहा है ब्लैक कलर की चेयर है फर्श है --

एक भोले बाबा का मंदिर है पेड़ है यहाँ पे अं तीन प्लेटें रखी हुई है एक डिब्बा है।

ये गायों को भैंसों का गोटा दिख रहा है यहाँ पे जो गायों को चारा डाला जाता है --

का कटिंग मशीन है बहुत सारी गाय है और छोटा सा कंपाउंड है और झाड़ी --

ऊ डंपर दिख रहा है एक साइड में छोटा सा टू व्हीलर दिख रहा है लाइटिंग दिख रही --

और यहां पर पांच लड़के हैं और एक लड़की है लड़की उन्हें प्लान दे रही--

येलो कलर की स्कूल बस है और कबाड़ दिख रही है और मिट्टी दिख रही है कार है। --

ये एक घर है यहाँ पे सीढ़ियाँ है सीढ़ियों को गैलरी है और गेट भी है।

ये एक घर है इस घर में टेबल है टेबल पे राधा कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है।

बड़े बड़े पेड़ हैं और घास हरी भरी भरी हुई है।

या यह भी लिखा हुआ है रास्ता है सीढ़ियाँ हैं बादल दिख रहा है झाड़ी है दो आदमी खड़े हुए हैं।

ये आइसक्रीम के पोस्टर लगे हुए हैं सीढ़ियाँ --

ये एक फ्रूट की दुकान है यहाँ पे एप्पल ऑरेंज बनाना --

एक बुक स्टॉल है वेदा बुक्स बू बुक्स वर्ल्ड ऐसे लिखा हुआ है आदमी खड़ा हुआ है।